और कुछ मजदूर मसाले को भरकर लकड़ी के पुल पर चढ़ के लेकर जा रहे हैं।

इस चित्र के अंदर हमें एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।

यहाँ पर टाइल्स भी लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर हमें बहुत सारी बाइके दिख रही हैं।

और ये एक जाली के अंदर लाइनों से बंद हैं।

यहाँ पर एक ब्लू कलर का गैस सिलेंडर भी रखा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक पेट्रोल टैंक दिख रहा है।

एक ने वाइट गाउन पहना हुआ है।

दूसरे साइड पे हरे-हरे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बच्चों की टॉयज वाली आइटम दिख रहे हैं।

यहाँ पर कुछ बलून भी लगे हुए हैं।

और यहाँ पर एक ऐ_सी भी लगा हुआ दिख रहा है।

एक बैनर पे लिखा है प्लांट फैशन ।

ये गर्ल्स अपने हाथ से कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम बना रही हैं।

और यहाँ पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर एक डिजाइनिंग में कटा हुआ छोटा सा पौधा भी दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक झोपड़ी दिख रही है।

दूसरे साइड पर पेंटिंग्स लगी हुई है।

और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं ।

और बाकी में हरे कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

और एक व्यक्ति कार से जा रहा है।

इसने ग्रीन कलर की लाइट जैकेट पहन रखी है।

इस चित्र के अंदर हमें एक काँच का बड़ा सारा गेट दिख रहा है।

शॉप नंबर टू लिखा हुआ आ रहा है ।

और यहाँ पर काफी सारा आइटम है।

ऊपर कोटिक महिंद्रा बैंक का बैनर लगा है नीचे--

इस चित्र के अंदर हमें बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं।

और यह सारी सब्जियां प्रोटीन से भरी हुई होती हैं।

एक व्यक्ति ने सफेद शर्ट पहन रखी है।

और यहाँ पर काँच के ग्लास लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर हमें एक व्यक्ति दिख रहा है।

यहाँ पर काफी सारे सेसे भी टंगे हुए हैं।

और यहाँ पर नारियल के बड़े-बड़े दरख्त भी हैं।